और ये आपस मे कुछ बात कर रहे हैं।

इस दृश्य मे हम एक सफेद रंग की इमारत को देख पा रहे है पीछे सफेद रंग का आसमान आसपास हरे रंग के वृक्ष सामने--

रिक्शा स्कूटर बाइकस हम यहाँ पर देख पा रहे है यह एक बाजार का दृश्य है।

खुला आसमान जो कि कुछ काला और सफ़ेद नज़र आ रहा है मंदिर के ऊपर हम दो भगवान की मूर्तियां भी देख --

दूसरी तरफ एक कुछ पोस्टर नजर आ रहे है और यह एक मंदिर का दृश्य है।

बोहत सारे हरे भरे पेड़ पौधे नज़र आ रहे है और इसे निहारने के लिए काले रंग की रेलिंग नज़र आ रही हैजहाँ पर देख कर आप नदी का देख सकते है।

इस दृश्य में हम एक भवन देख पा रहे है जिस पर जनपद पंचायत लिखा हुआ है।

दृश्य में हम जनपत पंचायत का भवन देख पा रहे हैं यह एक पंचायत घर को रास्ता जा रहा हैं यहाँ पर हम लगभग चार मोटर साइकिल्स को देख पा--

इस दृश्य में हम एक भवन देख पा रहे है जिसमे सफ़ेद और लाल रंग से सजाया गया है इसके सामने बहुत--

इसके आसपास कुछ घर खेत और काले रंग का आसमान और कुछ झाडिया पेड़ - पौधे दिख रहे--